इस तस्वीर मे नीला आसमान दिख रहा है हरे भरे झाड दिख रहे है और कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे नीला आसमान नज़र आ रहा है तीन पहिया दो पहिया वाहन चलते हुये --

इस तस्वीर मे नीला आसमान दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे झाड नजर आ रहे है।

के गले मे फूलों की माला डली हुई है।

तस्वीर मे नीला आसमान नजर आ रहा है हरे झाड नजर आ रहे है और एक व्यक्ति एक चार पय्या बड़े वाहन के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है और बिजली की तारे नजर आर--

इस तस्वीर मे नीला आसमान नज़र आ रहा है हरे-भरे झाड नज़र आ रहे एक बड़ीसी नदी जाते हुए नज़र आ रहे है।

और लाइटे जलती हुई नजर आ रही है और बहुत से लोग नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे एक व्यक्ति तेल के कारखाने मे नजर आ रहा है अपनी तस्वीर खिचते हुए और पीछे बहुत से तेल के डबे नजर आ रहे है।